आ केतना भीड़ लगल बा। मोटरसाइकिल साइकिल वाला आदमी आवता। पैदलो आदमी आवता। कित्ता बढ़िया नीला नीला छड़ी ले बा। पिछवा घरो लऊक --

ये कितना नीक लागत आसमान एकदम साफ सुथरा नीला लौकता।

एक ठे बच्चन के खेले वाला फिशलऊगा जेके बोलल जाला।

फूल लगल बा लाल पीला हरा नीला।

ख् केतना बढ़ियां रस्ता बा। लाल पीला हरा नीला रस्तवा में ईंटा बिछावल बा। अ एहर हरा-भरा पेड़-पौधा। दूर देखा एगो चर्च लउकता।

नदी के सीन बा पहाड़ के ऊपर पहाड़ दिख ता ओहि नीचे वहर पूरा हरा-भरा पहाड़ लौकता --